इसमे पानी पटाते है तब यह नम्हर होता हैं नही तो ऐसे छोड़ देते है तो ऐसिये रह जाता है यह इसमे बाल भी होता हैं।

ये लिफ्ट देखने में अच्छा लगता हैं लिफ्ट पर घूमने मे भी मन लगता हैं ।